यह सामने एक मार्केट दिखाई दे रहा है जिसमें फैमिली सुपरमार्केट लिखा हुआ है।

तीन चार मंज़िललललल लिखी हुई है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है यहाँ बाजू में फु पेड़ पुरे दिखाई दे रहें हैं जो हरे कलर के हैं।

यह सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जो बकरीए चराते हुए दिखाई दे रहा है यहां पर लाठी रखी हुई दिख रही है यहां पर बहुत सारी बकरियां हैं चर रही है।

और पुष्पों की माला भी दिखाई दे रहे हैं यहां बाजू में एक टॉवल रखा हुआ जो हरे कलर का है।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

गाइस सामने बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहें हैं जो योग कर रहे हैं |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

यह सामने एक दुकान दिखाई दे रही है ऊपर इसमें लिखा हुआ है बाल-दाढ़ी।

ये सामने ही दो शॉप दिखाई दे रहीं हैं इसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं वहाँ पर बहुत सारे के कपड़े टंगे हुएं हैं।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

यहाँ पर भोत सारी लाइट जल रही हैं कलर कलर की यहां पर लाइट जल रही है जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहुत सारी बोक्सिग पंच रखे हुए है एक शूज उतरे हुए है यहां पर यहां पर कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर इसकी एसमशी का चिन है दिखाई दे रहा है साइन दिखाई दे रहा है।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

कुछ जीप और बाइक खड़ी हुई हैं बाजू में रोड दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का हरा कलर के पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं ।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

इसमें बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहें हैं बहुत सारे लेडीजें भी है।